डैम नजर आ रहा है डैम काफी बडा दिखाई दे रहा है डैम में काफी ज़्यादा पानी नजर आ रहा है पानी के ऊपर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है ब्रिज काफी लम्बा नज़र आ रहा है।